जो आर्ट एंड क्राफ्ट में पार्टिसिपेट किये हुए हैं।

सामने एक फ्रिज रखा हुआ है ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स रखे हुए है पानी का भी बॉटल हैं।

और और जो की यह एक मतलब अलग जगह पे हैं वहाँ आस पास कुछ एरिया नहीं है लग रहे है ।

और नीचे चेयर लगे हुए है चेयर में बहुत सारे लोग बैठे हुए है और टेबल भी है उसके साथ - साथ --

और वहाँ पे कुछ सुरंग टाइप का भी है जहाँ से ए पानी निकलता है बाहर और वहाँ उस से घूम सकते है और बहुत सारे ब बच्चे पीछे तैर भी रहे है।

ये कोई कैंपस लग रहा नीचे जहाँ पे गार्डन एरिया टाइप है और गार्डन एरिया के जस्ट बगल में साइड साइड में पै--